तस्वीर में दिखाई दे रहा है की यहा पर एक व्यक्ति है जो पत्थर को नापता हुआ नज़र आ रहा है यहाँ।